इस फोटो में बहोत सा पानी है दो लोग का और एक लड़का बैठा हूं पत्थर पे--

और दो गुलाबी कलर के पैर रही है और एक संतरी कलर वाली अपने हाथ में चप्पल ले रहे इधर एक बोट खड़ी है बहोत से पहाड़ है यहां पर बहोत सा पानी है।

कुएं टाइप का बना हुआ है सामने एक बाल्टी रखी है लीले कलर का कुछ रखा हुआ है साइड में पाइप भी है।

यह घर में कोई स्विमिंग पूल है।

इसके तीन पहिए दिख रहे हैं।

यह किसी पार्क सड़क की फोटो है जिसमें एक लड़का पैदल चल रहा है एक गाड़ी--

यह किसी साइकिल की दुकान का फोटो है जिसमें बहोत सी साइकिल खड़ी है जिसमें कुछ साइकिल

ग्रीन रंग का यहां पे कुछ कलर हो रहा है फिर व्हाइट कलर का इसमें फोकस लाइट लगी हुई है।

छोटे मेज पे एक माजा की बोतल धरी है एक नीचे गई है बोतल ।

यह किसी होटल की फोटो है जिसमें बहुत सी चेयर लगी हुई है टेबल है वाइट ।

कुछ मोटरसाइकिले हैं कुछ एक्टिवा है और एक गार्ड खड़ा हुआ है और उसके साथ एक और खड़ा हुआ है।

ब्लैक कलर की उसकी साइड में एक और व्हाइट कलर की--

भूरे कलेका ग्रे कलर की व्हाइट कलर की और एक लाल कलर की गाड़ी ऊपर टंग रही है।

यह किसी फो कमरे की फोटो है जिसमें व्हाइट कलर का कलर हो रहा है।

गेट है खिड़की लगी हुई है जिसमें शीशे लगे हुए हैं।

बहुत सारी फोकस लाइट लगी हुई है ब्लैक कलर लगा हुआ है और उसमें छत में लाइट भी है।

बहुत से खिड़की दरवाजे है इसपे वाइट कलर का कलर हो रहा है और लाल कलर का हो रहा है।

यह किसी फैक्ट्री की फोटो है जिसके सामने एक जोड़ा है जोड़े पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है।

कोई बड्डी बड़ीं हैं फैक्ट्री साइड में यह नीले कलर की है। यहां पे --

दस रुपए का टोकन का टैटू लगा हुआ है बोर्ड।

गोल्डर कलर का है सोफा ।

सिल्वर कलर के और ब्लैक कलर के--

और छत में पंखा लगा हुआ है और--

ये किसी फंक्शन की फोटो है जिसमें दो वेटर खड़े हुए हैं वेटर दो ब्लैक कलर की पहने हैं और--

यह कोई फूलों को दुकान है।

बहुत सारे फूल धरे हैं वाइट कलर के और पीले रंग के और गुलाबी रंग के फूल धरे हुए इसमें।

जो बिजली की दुकान की फोटो है जिसमें--

स्विचों के डब्बे धरे हुए हैं और होल्डर के डब्बे धरे हुए हैं बल्ब के डब्बे धरे हुए हैं और एक --

फूल है लाल कलर के और आदि कलर की इसमें--

हेलमेट रखा है ब्लैक कलर का और यहां पे छोटे छोटे से पत्थर है ग्रीन कलर के--

तस्वीर लगी है उसी साइड में ब्लैक कलर ब्लैक कलर की अंडरग्राउंड हो रहा है इसपे।

इसपे पत बहोत सा सरिया लगा हुआ बंधा हुआ और--

इस पे दो तीन डब्बे रखे हुए हैं जिसका डब्बा व्हाइट और पीले रंग का है और एक।

सरकारी बस खड़ी है इसकी साइड में ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई है और एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें दो--

टोकड़ी है हरे कलर की इसके साइड में--

यह गाड़ी ठीक करने का लगता है जिसमें एक गाड़ी है।

और एक उसकी खिड़की खुली हुई है जहां पे उसकी साइड में एक पीले कलर का कपड़े पहने खड़ा है उस साइड में --

यहां तीन लड़के खड़े है। साइड में एक वेगेनार खड़ी हुई है उसमें काम चल रहा है जिसमें दो लड़के बैठ के लड़के व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन--

और इसकी छत में फॉक्स लाइट लगी है बड़ी और उसकी छत में वैसे ही सीमेंटिड हो रही है।

और लड़का महरून कलर का टी शर्ट पहेरा हैं और ब्लैक कलर की पैंट पहेरा हैं और उसकी कैप रखी हुई हैं।

सामने बहोत छोटे छोटे से मकान दिख रहे हैं जिस मकान में एक मकान व्हाइट कलर का दिख रहा है बड़ा सा।